एक इंसान लोहा वेल्डिंग करते हुए देखा जा सकता है।

यह किसी मेडिकल की तस्वीर लग रही है।

दीवाल पर कई सारे तस्वीर देखे जा सकते हैं।

इस तस्वीर में दो बिल्डिंग देखे जा सकते हैं।

घर का छत भी पत्ते से बना हुआ है।

एक नीले रंग की रेलिंग दिखाई जा सकती है।

इसमें एक आदमी भी देखा जा सकता है।

घर के आगे खाली मैदान देखा जा सकता है।

इस तस्वीर में एक आदमी देखा जा सकता है।

घास भी उगी हुई देखी जा सकती है।

यह किसी एकेडमी की तस्वीर लग रही है।

इस तस्वीर में एक बिल्डिंग देखी जा सकती है।

इसमें एक नदी देखी जा सकती है।

पत्थर पर कुछ लाल कलर का परा हुआ है।

इस कमरे का कलर हरा है।

इस तस्वीर में एक पहाड़ के ऊपर एक मंदिर देखा जा सकता है।

यह किसी बर्थडे पार्टी की तस्वीर लग रही है।

कुछ लोग भी देखे जा सकते हैं।